क्युकि साइड में काफी धूप की रोशनी भी दिख रही है हम देख पा रहे है वहां पर कुछ गाड़िया खड़ी है अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए साइड में हमे दो चार पिलर्स भी नजर आ रहे है व्हाइट कलर के बड़ेब--